रखी हुई एक बाल्टी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें कह खुला आसमान दिखाई दे रही है।

ट्स दिखाई दे रही है और कुछ पंखे भी दिखाई दे रहै है यहाँ पर हमें बैठे हुए दो व्यक्ति दिखाई --

यहाँ पर हमें एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है बस स्टैंड में हमें काफी सारे बसेस लाइन से खड़ी हुई--

यहाँ पर हमें किसी मल्टी बिल्डिंग का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें काफी सारे --

दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें एक ऊपर झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे की ट्रॉली निकलती हुहि दिखाई दे रही है हम यहाँ पर एक रथ --

पड़ी हुई पत्थर की पत्थर दिखाई दे रहै है और यहाँ पर कुछ पत्थर की बनी हुई प्राचीन मुर्तिया--

लटकते हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमें कुछ सामान दिखाई --

आ सुरिगणनी के पत्ते दिखाई दे रही है और कुछ लगा हुआ --

बाहर एक लड़का फोटो क्लिक करता हुआ दिखाई दे रहा है और बाहर काफी सारे बड़े-बड़े पोस्टर्स हमें लगे हुए हमें दिखाई दे रहे है कुछ कोचिंग क्लास के कुछ बैंक के ए_टी_एम के--

यहाँ पर हमें एक फ्लोर दिखाई दे रहा है फ्लोर पर हमें काफी सारी बच्चियाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है जिन्होंने --

यहाँ पर हमें एक बड़ी सी नवी नदी दिखाई दे रही है लम्बी सी जहाँ पर हमें नदी के --

पर इसका गेट हमें बंद दिखाई दे रहा है कुछ कांच की गेट दिखाई दे रही है बाहर हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और अन्दर काफी सारे--

जो की दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहा है और बहती हुई--

यहाँ पर हमें एक बिग बाजार दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें एक मॉल का बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर जलती हुई काफी सारे लाइट्स दिखाई दे रही है और एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा--